पर्ल में अरैज पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे
अरै का इंडेक्स
अरै की लंबाई
अरै के एलिमेंट्स को एक्सेस करना
अरै पर लूपिंग करना
सीक्वेंशियल अरै
और अरै को पृथक करना
यहाँ मैं उपयोग कर रहा हूँ उबंटू लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम और पर्ल 5142 मैं गेडिट टेक्स्ट एडिटर का उपयोग भी करूँगा
आप अपने पसंद के किसी भी टेक्स्ट एडिटर का उपयोग कर सकते हैं
आपको पर्ल में वेरिएबल्स कमेंट्स और डेटा स्ट्रक्चर्स का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए
लूप्स और कंडिशनल स्टेटमेंट्स का ज्ञान अतिरिक्त लाभदायक होगा
कृपया संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जाएँ
अरै एक सामान्य डेटा स्ट्रक्टर है जिसमें किसी भी डेटा टाइप के एलिमेंट्स सम्मिलित हैं
अरै इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है
पर्ल में अरै की लंबाई घोषित करना आवश्यक नहीं है
अरै की लंबाई ज्यादा और कम होती है जब इसमें एलिमेंट्स जोड़े और हटाए जाते हैं
अरै को घोषित करने के लिए सिंटेक्स है myArray इक्वल टो ओपन ब्रैकेट 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा सिंगल कोट एबीसी सिंगल कोट कॉमा 103 क्लोज ब्रैकेट सेमिकोलन अरै का आखिरी इंडेक्स इस कमांड के साथ पता किया जा सकता है myArray सैंपल प्रोग्राम का उपयोग करके समझते हैं
टर्मिनल खोलें और टाइप करें गेडिट अरायिंडेक्स डॉट पीएल स्पेस ऐंपर्सैंड और एंटर दबाएँ
यह गेडिटर में अरायिंडेक्स डॉट पीएल फाइल खोलेगा
कोड का भाग टाइप करें जो स्क्रीन पर प्रदर्शित है
यहाँ हमने एक अरै घोषित और परिभाषित किया जिसमें 5 एलिमेंट्स सम्मिलित हैं
जैसा कि अरै इंडेक्स 0 से शुरू होता है आखिरी इंडेक्स वैल्यू 4 होगी
अर्थात एलिमेंट्स की संख्या जो 5 है माइनस 1
फाइल को सेव करने के लिए CtrlS दबाएँ
अब टर्मिनल पर जाएँ और पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करें
टाइप करें पर्ल अरायिंडेक्स डॉट पीएल और एंटर दबाएँ
आउटपुट टर्मिनल पर प्रदर्शित होगा
अब देखते हैं कि पर्ल में अरै की लंबाई कैसे ज्ञात करें
यहाँ कई तरीके हैं जिनसे हम अरै की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं
अरै का इंडेक्स 1 अर्थात array 1 पर्ल इनबिल्ट स्केलर फंक्शन का उपयोग करके अर्थात स्केलर ओपन ब्रैकेट array क्लोज ब्रैकेट
स्केलर वेरिएबल के लिए अरै निर्धारित करके अर्थात arrayLength array सैंपल प्रोग्राम का उपयोग करके अरै की लंबाई का एक उदाहरण देखते हैं
टर्मिनल पर जाएँ और टाइप करें गेडिट अरेलेंग्थ डॉट पीएल स्पेस ऐंपर्सैंड एंटर दबाएँ
निम्न कोड के भाग को टाइप करें जैसा स्क्रीन पर दिखाया गया है
यहाँ हमने एक अरै घोषित और परिभाषित किया जिसमें 5 एलिमेंट्स सम्मिलित हैं
अतः आउटपुट 5 प्रदर्शित होगा
चिन्हांकित पर्ल में अरै की लंबाई ज्ञात करने के विभिन्न तरीके हैं
कृपया ध्यान दें हमने कॉमा का उपयोग करके प्रिंट स्टेटमेंट में आउटपुट को श्रेणीबद्ध किया
फाइल को सेव करने के लिए Ctrl एस दबाएँ
अब स्क्रिप्ट निष्पादित करें
टर्मिनल पर जाएँ और टाइप करें पर्ल अरेलेंग्थ डॉट पीएल और एंटर दबाएँ
टर्मिनल पर इस तरह आउटपुट दिखेगा
अब समझते हैं कि अरै में व्यक्तिगत एलिमेंट्स कैसे एक्सेस करें
इंडेक्सिंग का उपयोग अरै के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए किया जाता है
अरै के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए एक उदाहरण देखते हैं
पहले स्थान पर अंतिम स्थान पर किसी भी स्थान पर टर्मिनल पर जाएँ और टाइप करें गेडिट पर्लरे डॉट पीएल स्पेस ऐंपर्सैंड और एंटर दबाएँ
कोड के निम्न भाग को टाइप करें जैसे दिखाया गया है
कृपया ध्यान दें
म्यारे चिन्ह के साथ घोषित होता है
लेकिन अरै एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें चिन्ह के उपयोग की आवश्यकता है
किसी भी स्थान पर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें अरै में इंडेक्स पास करने की आवश्यकता है
यहाँ म्यारे के पहले एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स के रुप में 0 पास किया जाता है
म्यारे के अंतिम एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमने म्यारे के अंतिम इंडेक्स को पास किया है
याद करें हमने इसके बारे में पहले ही सीखा है
फाइल को सेव करने के लिए Ctrl एस दबाएँ
टर्मिनल पर जाएँ और पर्ल पर्लरे डॉट पीएल के रुप में स्क्रिप्ट निष्पादित करें
और एंटर दबाएँ
आउटपुट इस तरह होगा जैसे टर्मिनल पर दिखाया गया है
अब समझते हैं कि अरै के प्रत्येक एलिमेंट पर लूप कैसे करें
यहाँ अरै पर लूप करने के दो तरीके हैं
फोर लूप का उपयोग करके फोरिच लूप का उपयोग करके सीखते हैं कि एक सैम्पल प्रोग्राम का उपयोग करके अरै पर पुनरावृति करने के लिए इन लूप्स का उपयोग कैसे करें
इसके लिए टर्मिनल पर जाएँ और टाइप करें गेडिट लूपिंगवररे डॉट पीएल स्पेस ऐंपर्सैंड और एंटर दबाएँ
कोड के भाग को टाइप करें जैसा स्क्रीन पर दिखाया गया है
यहाँ हम इंडेक्स की पुनरावृति द्वारा अरै के प्रत्येक एलिमेट्स को प्रिंट कर रहे हैं
आई वेरिएबल की वैल्यू के अरै के अंतिम इंडेक्स पर पहुँचने तक फोर लूप निष्पादित होगा
यहाँ फोरिच लूप अरै के प्रत्येक एलिमेंट के लिए निष्पादित होगा
एक बार अरै इसके अंतिम एलिमेंट पर पहुँचता है तो यह फोरिच लूप को बाहर कर देगा
कृपया ध्यान दें यदि आप फोर और फोरिच लूप्स के बारे में नहीं जानते हैं तो कृपया संबंधित स्पोकन ट्यूटोरियल्स के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जाएँ
अब फाइल को सेव करने के लिए Ctrl एस दबाएँ
फिर टर्मिलन पर जाएँ और पर्ल लूपिंगवररे डॉट पीएल के रुप में स्क्रिप्ट को निष्पादित करें
और एंटर दबाएँ
आउटपुट टर्मिनल पर प्रदर्शित होगा
पर्ल में हम सीक्वेंशियल अरै घोषित कर सकते हैं
जैसे alphaArray ओपन ब्रैकेट आ डॉट डॉट डी क्लोज ब्रैकेट सेमीकॉलन
अर्थात अल्फ़ाररे एलिमेंट्स आ ब सी और डी को सम्मिलित करेगा
इसी प्रकार numericArray इक्वल टो ओपन ब्रैकेट 1 डॉट डॉट 5 क्लोज ब्रैकेट सेमीकॉलन numericArray इक्वल टो ओपन ब्रैकेट 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 5 के समान है
पर्ल अरै के भाग को भी प्रदान करता है
यह है अरै के भाग को एक्स्ट्रेक्ट करना और इसे एक नए अरै में डालना
array 19 कॉमा 23 कॉमा 56 कॉमा 45 कॉमा 87 कॉमा 89 क्लोज ब्रैकेट सेमीकॉलन
newArray array ओपन स्क्वैर ब्रैकेट 1 कॉमा 4 क्लोज स्क्वैर ब्रैकेट सेमीकॉलन
विभाजन के बाद न्यूवारे इस तरह दिखेगा newArray ओपन ब्रैकेट 23 कॉमा 87 क्लोज ब्रैकेट सेमीकॉलन
संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा
अरै का इंडेक्स ज्ञात करना
अरै की लंबाई ज्ञात करना
अरै के एलिमेंट्स को एक्सेस करना
अरै पर लूप
सीक्वेनियल अरै
सैम्पल प्रोग्राम का उपयोग करके अरै का विभाजन
यहाँ आपके लिए नियत कार्य है
रेनबो के रंग का एक अरै घोषित करें
इस अरै के 4थ एलिमेंट को प्रिंट करें
इस अरै की लंबाई और अंतिम इंडेक्स को प्रिंट करें
फोर एएमपी फोरिच लूप का उपयोग करके अरै के प्रत्येक एलिमेंट पर लूप करें
अरै को घोषित करें जैसे myArray ओपन ब्रैकेट 19 क्लोज ब्रैकेट सेमीकॉलन और फिर अरै विभाजन का उपयोग करके ऊपर दिये गये अरै से विषम संख्या का एक अरै बनाएँ
निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें
यह स्पोकन ट्यटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है